टेबल है टेबल पर रखा हुआ मोबाईल है और कई प्रकार का सामान रखा हुआ है दो लेडिज हैं और कई सारे ल बच्चे हैं। छोटे-छोटे दो लेडिज हैं जो कपड़े पहने हुए हैं एक ब्लैक कलर का एक --

एक औरत है वो हाथ जोड़े हुए साड़ी ऑरेंज कलर की पहने हुए है मांग में सिंदूर डाले हुए है।

डॉक्टर है डॉक्टर के साथ स्टाफ नर्स है कंपाउंडर है। एक लेडीज़ खड़ी है।

पूल है पूल म नदी का बहाव है पूरा नदी बह रही है। कई सारे कई प्रकार के वृक्ष दिख रहे हैं हरे-भरे नदी का पानी जो बह रहा है --

और टीचर जो खड़े उनको देख रही है और बच्चे सब अपना-अपना लिख रहे हैं और कलर भी कर रहे हैं कुछ बच्चे जो टीचर देख रहे --

जो रेड कलर की शर्ट पहन टीशर्ट पहने हुए लाइट है उसके सामने से और कई प्रकार के ब टीले दिख रहे हैं। पहाड़ और टीले दिख रहे हैं। हरे-भरे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

एक पहाड़ टाइप कुछ मतलब गुफा टाइप दिख रहा है जहाँ पे एक आदमी शूज और टी-शर्ट पेंट पहने हुए उसके अंदर हल्का घुसा हुआ है।

ये बच्चे बैठे हुए हैं जो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं।

दो आदमी है एक आदमी मोबाइल लिए हुए है। एक आदमी चेयर पर बैठे हुए फेशियल करा रहा है। वहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है। ए.सी. लगी हुई है। सामान रखा हुआ है। एक प्रकार का ऑइल --

कई सारी बच्चियां है जो ग्रुप में बैठी हुई है और गम-गमला दिख रहे है दो गमले दिख रहे है गमले का पत्ता दिख रहा है पॉलीथिन दिख रही है एक लेडीज दिख रही है उनका जो आपस में कुछ काम कर रहे --